यहां पर सामने में एक लाल कलर के कारपेट दिख रहा है।

यहां पर दाहिने तरफ में बहुत सारे शूज दिख रहे हैं।

यहां पर उस बोर्ड पर होटल अरूणाचल लिखा हुआ है।

यहां पर इन डॉक्टर दोनों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे लाल कलर के कुर्सियां दिख रहे हैं।

यहां के सीलिंग का रंग व्हाइट कलर में दिख रहा है।

यहां पर इस बोर्ड पर बैग हाउस लिखा हुआ है।

यहां पर बाएं तरफ में एक ग्रे कलर का परदा दिख रहा है।

यहां पर बीच में एक इलेक्ट्रिक केतली दिख रहा है।

यहां पर इस बिल्डिंग के अंदर के वाल का रंग येलो कलर में दिख रहा है।

यहां पर बाएं तरफ में चोए वांग्स लिखा हुआ है।

यहां पर इस तीन बोर्ड में बी_एस_एन_एल लिखा हुआ है।

यहां पर दाहिने वाले आदमी ने ब्लू कलर की जींस पहने हुए है।

यहां मे बाएं तरफ में एक लाइट पोस्ट भी दिख रहा है।

यहां पर इस बिल्डिंग का रंग ऑरेंज और क्रीम कलर में दिख रहा है।

वाले बोर्ड का रंग ब्लू और वाइट कलर में दिख रहा है।

यहां पर बाएं वाले बिल्डिंग का रंग सफेद कलर में दिख रहा है।

यहां पर एक डिस्पोजल बाटी के ऊपर एक लकड़ी के चम्मच रखे हुए हैं।

यहां पर उस बोर्ड पर इटामोटो लिखा हुआ है।

यहां पर दाहिने तरफ में एक आदमी व्हाइट कलर के टी शर्ट में दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे ब्राउन कलर के बेंच और डेस्क दिख रहा है।

यहाँ पर एक लड़का ब्लू कलर का टी शर्ट में दिख रहा है।

यहां पर दाहिने तरफ में कुछ सफेद चॉक से कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर बाएं तरफ में एक जींस स्कर्ट भी दिख रहा है।

यहां के वॉल का रंग लाल कलर में दिख रहा है।

यहां पे बाएं तरफ वाले लड़के ने सफेद कलर शर्ट पहने हुए हैं।

यहां पर पीछे में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे ब्लू कलर की कुर्सियां रखे हुए हैं।

यहां पे बाए तरफ में एक ग्रीन और वाइट कलर के बिल्डिंग दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर बाएं तरफ में एक लाल कलर का कार रखा हुआ है।

यहां पर उस गाड़ी के सामने एक कलरफुल छतरी दिख रहे है।

यहां पर दाहिने तरफ में काले आसमान छाए हुए हैं।

यहां पर पीछे में काले बादल छाया हुआ है।

यहां पर टेबल में ग्रीन कलर का टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ है।

यहां पर टेबल में एक सफेद कलर का डब्बा दिख रहा है।